इस फोटो हमें दिख रहा है कि किसी घर का काम लगा हुआ है।

इस फोटो में हमें किसी की दुकान दिखाई दे रही है।

और दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि खेल रहे--

जहां पे हमें बहोत सारी हरियाली दिखाई दे रही है।

ये फोटो किसी गाड़ी की है ये किसी शादी वाली गाड़ी की फोटो लग रही है।

दो आदमी जो हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं।

जो बिल्डिंग है उस पे हम पीले रंग की कली--

यहां पे हमें दिखाई दे रहे हैं दे रहा है कि ये किसी बड़े कमरे की फोटो है।

ये हमें ऐसे लग रहा है कि पीछे किसी--

यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं जो जिम कर रहें हैं।

जहाँ पे कारों की धुलाई की जाती है।

हमें यहां पे कुछ कारें भी दिखाई दे रही--

हमें यहां पे एक टी_वी भी दिख रहा है।

यहां पे हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहे है स्टेज पर--

यहां पे हमें एक छोटा सा मीटर दिखाई दे रहा है।

कान्हा जी दिख रहे हैं साथ में पार्वती दिख रही हैं।

एक टेबल दिख रहा है उसके ऊपर पानी की बोटल रखी है और साथ में--

हमें यहां पे कुछ बल्ब वगैरह का सामान जो इलेक्ट्रॉनिक है वो दिख रहा है।

उस फोटो में हमें दिख रहा है कि यहां पे कुछ सीढ़ियां लगी हुई है यहां पे एक दुकान दिखाई दे रही है यहां पे लिखा हुआ है। बाल दाढ़ी --